एक राइट साइड कि दुकान में बलफ लगा हुआ है।

और भीड़ भी इकट्ठा जिसमें लेडिस और जेंट्स सब बच्चे भी हैं।

वज़ू खाना दिख रहा है जो लंबा सा बहुत बड़ा है।

और एक खिड़की नजर आ रही है जिसमें बहुत सारे शीशे भी लगे हुए हैं।

और बहुत सारी श्रीमेन भी इसके अंदर भरी हुई है।

दो माइक लगे हुए हैं जो इधर उधर देख रहे--

चार ए_सी विंडो की पीछे वाल टंगी हुई है।

नीचे की ओर एक दुकान है जिसमें गेट लगा है शीशे का।

उसी के बगल में एक स्लाइडिंग खुली हुई है।

बहुत सारे फूल भी उसके अंदर लगे हुए हैं।

एक मकान बना हुआ है जो बड़ा सा है।

गोल गोल लाइटें भी व्हाइट कलर की लगी हैं।

और काफी मात्रा में यहां पे भीड़ भी है नीचे की ओर।

एक झूमर नजर आ रहा है जो बड़ा सा है गोल में है।

बहुत सारी भीड़ नजर आ रही है जिसमें आदमी और लेडिस भी है।

पेड़ सूखे हुए लगे हुए हैं।

फोटोग्राफ भी कुछ नजर आ रही हैं।

बड़े बड़े भी पेड़ काफी एक इक्कठा है।

गोल में भी है और चौकोर में भी है डिजाइन भी खूब सारी इसमें है।

और काउंटर भी लगे हुए हैं जिसपे एल_ई_डी कुछ लगी हुई है।

एक बाइक खड़ी है जिसकी नंबर प्लेट दिख रही है पूरी।

बड़ा सा मैदान दिख रहा जिसके अंदर पेड़ पत्तियां लगी हुई है।

खाना रखने वाला स्टील का डिब्बा भी रखा हुआ है।

एक चिन अप मशीन लगी है। एक रनिंग मशीन है। एक साइकलिंग है। एक दौड़ने वाली है।

लाइटें भी लगी है और डिजाइन वाले बड़े घड़ी है।

कुछ गमले सामने रखे हैं जिसके अंदर रेड और व्हाइट फूल लगे हुए हैं।

और इसमें पत्थर के ब्रिज भी बने हुए हैं।

जो गोल गोल भी है चौकोर में भी है।

पीछे की ओर ईंटे रखे हुए हैं।

एक रेड कलर से व्हाइट भी है रेड भी है।

उसी के पास छोटे छोटे सी--

मूर्ति बनी है जिसके ऊपर ब्लैक कलर का कुछ बना हुआ मूर्ति टाइप में।

गोल गोल डिजाइन में दरवाजे नजर आ रहे जिसमें शीशा लगा हुआ है।